और यहां पर कुछ लोग इकट्ठे--

और कुछ लोग मंदिर में इकट्ठे हुए हैं।

और सामने कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

और यहां कुछ बोर्ड लगे हुए हैं और--

यहां पर एक बिल्डिंग है और यहां पर कुछ दरवाजे लगे हुए हैं।